वहां पे एक इंसान यहां बैठ के योगा कर रहा है कोई एक्सरसाइज कर रहा है वहां पे स्टेम भी है रूट भी है अच्छा लग रहा है।

बहोत अच्छा एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे लोग बहोत अच्छे से योगा कर रहे हैं हाथ फैलाए हुए है कुछ योगा का स्टेप्स इनको बताया गया है यहाँ पे गाइड भी है जो इन्हें गाइड कर रहा है।

यहां पे बोर्ड पे दो पर्सन बैठ सकते हैं और एक बोर्ड पे एक पर्सन भी बैठ सकता है।

ये एक शॉप है जहां पे शायद बहुत सारे टेडी बीयर्स रखे हुए हैं पैक किए हुए हैं।

यहां पे एक रेड कलर का स्टूल भी है पीछे एक फ्लावर भी है जोसन फ्लावर बहुत सारे टॉयज हैं यहां पे सॉफ्ट ।